राइट साइड दीवाल पे ओम स्वस्तिक बना हुआ है।

कई सारे पिलर लगे हुए हैं।

कुछ लोग लिफ्ट से आ जा रहे हैं।

दो लड़कियां कैंडल लाइट लिए हुए हैं।

यह कच्ची रोड है रोड पर पाइप पड़ा हुआ है ट्रैक्टर जाने का निशान बना हुआ है।

यहां पर पिक्चर्स लगी हुई हैं बीच वाली पिक्चर्स में मणिपुर लिखा हुआ है।

की जमीन पर रखे हुए हैं।

यहां मदर ऑफ जीसस का स्टैचू लगा हुआ है।

कई सारी लाइट्स लगी हुई हैं।

फ़िशेस यहां पर कटी हुई रखी है।

सामने की तरफ पार्किंग एरिया है।

वहां पर दो लोग बैठे हुए हैं।

क्लीनिक के डोर पे गंगोत्री आयुर्वेदिक लिखा हुआ है।

यहां पर ऊपर की साइड बालूरघाट का बोर्ड लगा हुआ है।

बाहर की तरफ कई सारी बाइक खड़ी हैं।

उस टेबल के ऊपर राइट साइड और लेफ्ट साइड समान रखा हुआ है।